खींची गई है जोकि लाइटों की--

हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीर खींची गई है जो कि लाइटों की है इसमें --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

और पास ही में एक बोरे में भी कुछ रखा हुआ है।

तस्वीर खींची गई है जो कि--

हरे रंग के बैनर बंदे हुए हैं।

बहुत सारे बादल और नीचे की तरफ पानी--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

और यहां पर भी कई लोग जा रहे है।

और यह एक रेलवे स्टेशन का--